यहां पर बहुत सारा आदमी लोग खड़े है।

और यहां पर एक ये ग्रीन तिरपाल भी है।

बहोत सारे लोहे का मदद से जिम करने वाला भी बनाया गया है।

यहां पर सीमेंट की मदद से बनाया गया है।

सामने में लाल बैनर लगा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे तार भी लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर का है।

जो रेड और व्हाइट कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

साथ में ऑरेंज गमछा ओढ़ा हुआ है।

सामने में डिब्बा में बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

प्लाक्चिस में भी है और सामने में शेटर है जो वाइट कलर का है।

बहुत सारे तकिए भी रखे हुए हैं।

यहा पर मस्जिद वाइट कलर का है और ग्रीन कलर का है।

यहां पर नीचे में सीमेंट का मदद से रोड बनाया गया है।

स्कूल का कलर है व्हाइट और रेड कलर का है।

ऊपर में बहुत सारे लाइट भी लगे हुए है जो वाइट कलर का है।

खिड़की भी है जो लोहे और शीशे का मदद से बनाया गया है।

यह एक फील्ड का दृश्य है।

और यहां सामने में एक बस है जो ऑरेंज कलर का है।

नीचे में कार्टून है जो व्हाइट कलर का है।

बगल में छोटा बॉक्स भी रखा हुआ है जो व्हाइट कलर का है।

और सामने में बहुत सारे चेयर भी लगे हुए हैं।

जहां पर कैरेट में मछली उझल रहे हैं।

एक आदमी बाल काट रहा है।

और सामने में लाल कलर का एक अथि छाता लगा हुआ है।

सारे घर भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं जो वाइट कल का है।

बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुए है।

उसमें ब्लैक कलर से लिखा गया है।

सड़क है जो अलकतरा के मदद से बनाया गया है।

सामने मे काउंटर जो असमानी कलर का है।